यह तस्वीर में एक किराना दुकान दिखाई दे रही है किराने की दुकान में बोहोत सारे सामान दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर में मुझे एक किराना दुकान दिखाई दे रही है यह किराना दुकान के बाहर मुझे बहोत सारे तीन लोग खड़े हुए --

यह तस्वीर में मुझे एक बुक की दुकान दिखाई दे रही है| यहाँ पर लोग बुक खरीदने आते हैं |

यह तस्वीर मे मुझे एक घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है।

पीछे की तरफ मुझे कच्ची वाल दिखाई दे रही है जिसके ऊपर एक चद्दर का डाला हुआ है और यहाँ पर एक साइकिल भी दिखाई दे रही है एक बोरी पड़ी हुई भी दिखाई दे रही है।

बहुत सारी बिल्डिंग बनी हुई है पीछे आसमान बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहें हैं यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक खंभे भी दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर में मुझे एक फ्रूट मार्केट दिखाई दे रहा है फ्रूट मार्केट में मुझे बहुत सारे फ्रूट रखे हुए दिखाई दे रहे हैं जहां पर मुझे संतरा ऑरेंज --